तो ये बि वाली और बहुत सुन्दर तरीके से क्लीन है। कलर भी इनका ब्लू वाइट सोडा कॉफी कलर --

कुछ स्कूटी भी खड़ी हुई है कैबिन भी है देख सकते है आप जहा पे गाड़ीयों के ऑर्डरर्स दे --

हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे चश्मा लगाके कॉलर बंद करके टोपी लगाके गोल्डन कलर --

यहाँ हम इस दृश्य में देख रहे हैं यहाँ पे साबुन की बोहोत सारी--

देख सकते है यहा पे येल्लो कलर की फुल्स है सादिया बनाया गया है यहा पे जमीन पे और ये दीवारी के अवसर पर बड़ी सुंदर तरीके से ये एक यहाँ पे ऐ टायर रखे हुए है एक शोरूम है। साइकल का--

और साइड से देख सकते है पानी कोलड्रिंक माजा फ्रूटी फॅन्टा एव्रिथिंग इज हेयर ।